यहाँ पर बहोत सारे मिट्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहोत सारे ऑटो खड़े हुए हैं एक- एक लाइट का खंभा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक सोलर पैनल भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।